टेबल के पास एक मैडम खड़ी है मैडम ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए है।

झाड़ू की परछाई दिख रही है।

सूरज की रौशनी दिख रही है।

पास में पंजाब नेशनल बैंक का ए.टी.एम. है।

नेम प्लेट है पास में एक हॉस्पिटल है हॉस्पिटल के ऊपर नीले कलर का बोर्ड लगा है बाहर एक बाइक खड़ी है।

एक महिला है। वह स्टेज के पास खड़ी है।

जाली बनी हुई है सारे जानवर जाली के अंदर है बाहर घास दिख रही है।

स्टैंड दिख रहा है।